और एक टेबल पर एक दो तल्ला केक रखा हुआ है।

यह एक दुकान का फोटो दिखाई दे रहा है।

दुकहान के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

दुकान के अंदर कुछ महिला और पुरुष बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

और कुछ झंडे भी बॉर्डर के किनारे लगे हुए हैं।

बैंक के बगल में एक ए_टी_एम मशीन भी है।

यह एक लाइब्रेरी का फोटो दिखाई दे रहा है।